अंदर एक दीवार पर घड़ी टंकी हुई है और एक काले रंग की पंखा भी टंगी हुई नजर आ रही है।

एक गाड़ी उधर जाते हुए दिखाई दे रही है।

नीचे एक पोस्टर भी है जिसमें राउतर्स अकेडमी लिखा हुआ है।

सामने कुछ कुर्सी और डेस्क के ऊपर ग्लास नजर आ रही है।

कुर्सियों का रंग नीला और काला है।

यहां पेट्रोल भराने के लिए आए हैं जिसमें से कुछ मोटरसाइकिल है कुछ कार तो कुछ वैन --

ऊपर आरती बुक सेंटर लिखा हुआ है अंदर बहोत सारी पुस्तकों को रखा गया है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार के स्टेशनरी के समान मौजूद है।

यहां बहुत सारी छठी मैया की मूर्ति पड़ी हुई है।

एक झंडा भी है जिसमें जय श्री श्याम लिखा हुआ है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए भी नहीं जा रहे हैं उसके ऊपर हेलमेट भी लगी हुई है।

सामने एक दुकान है जिस पर महालक्ष्मी फ्रूट्स लिखा हुआ है।

सामने एक बहोत बड़ी स्कूल है जिस पर कार्मल कन्वेंट लिखा हुआ है इसका रंग हल्का ब्लू है।

इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक बहुत बड़ी पेड़ है।

यह दिन का समय है आसमान बिल्कुल साफ है।

यह एक ए_टी_एम की तस्वीर है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगी है ब्लू रंग की उसके बाहर फेडरल बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यहां एक छोटा सा बच्चा भी नजर आ रहा है कुछ स्विच बोर्ड भी लगे हुए।

यहां बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं बैठने के लिए भी बहोत सारी जगह बनाई गई है।

बड़ी सी जल टंकी है।

यह एक शादी समारोह की तस्वीर है।

यह एक कॉफी की दुकान है जिसमें एक कॉफी बनाने वाली मशीन नजर आ रही है।

दीवार पर सफेद रंग से पेंट किया गया है ऊपर कुछ लाइड भी लगी हैं।

सामने एक दुकान है जिसके बाहर एक पोस्टर लगी हुई है राठौड़ कुल्फी भी लिखा हुआ है।